और शायद यह कुछ सोच रहा है |

और नीचे ग्रीन कलर की मैट्स बिछी हुई हैं।

ई-रिक्शे खड़े हैं जो कि एक हरा कलर का है और एक नीला कलर का है।

यह एक कार सर्विस सेंटर है जिसका नाम ब्रम्हांस कार केयर सेंटर है।

और सामने एक बाइक खड़ी हुई है और दो बाइको में लोग नजर सवार आ रहे हैं।